सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो की ब्लू और वाइट कलर का है बिल्डिंग के नीचे एक बाइक और एक कार भी पार्क है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा जंगल दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा होटल दिख रहा है।

और अंदर एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो की येलो और रेड कलर का है।

सामने एक दीवार है जोकि ब्रिक्स का बना हुआ है और उसके सामने एक मशीन रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक रोड दिख रहा है जहाँ पर एक ट्रक खड़ी है।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

तीन चार बाईकें भी दिख रही हैं सामने बड़े बड़े घास उगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बेतला का जू दिख रहा है जहाँ पर सामने एक स्टेयर्स ऊपर जाता दिख रहा है और उसके इधर उधर ब्लैक कलर का रेलिंग लगा हुआ है।

और इस शॉप को बहुत सारे बैलून से डेकोरेट किया गया है।

इस फोटो में सामने बड़ा सा गोडाउन दिख रहा है जोकि पूरा ब्रिक्स से बना हुआ है।

इस फोटो में एक मंदिर दिख रहा है जिस जहां पर बिच में दोगो सांप की मूर्तिया राखी हुई हैं।

एक ब्लैक कलर का सीढ़ी भी दिख रहा है सामने एक काउंटर है जो कि वाइट कलर का है।

दीवार पर पिंक कलर की टाइल्से लगी हुई है।

बगीचा के एक तरफ बड़ा सा बिल्डिंग है जोकि येलो और वाइट कलर के है।

आस-पास बहुत सारे पेर और पौधे भी दिख रही हैं।

छत पर एक पंखा लगा हुआ है और दो तीन लाइटें जल रही हैं।

और दीवार का कलर व्हाइट और ग्रीन है दीवार पर बहुत अलग अलग--